देखो दोस्तों हमको ये गेरैज दिख रही है और ये देखिये ये गेरैज में कई सारी कार खड़ी हुई है देख सकते हैं ।

और यह देखो जो ये खेत है खेत में कुछ लगा रखा है पूरा हरा-भरा है।

यह देखो हमको बहुत बड़ा ग्राउंड दिख रहा है और देखिये ग्राउंड काफी बड़ा ग्राउंड है जहाँ पर ये क्रिकेट मैच वगेरा खेलते होंगे लोग --

और ये देखी हीरो होंडा शोरूम है जहां पे ये बाहर कई सारी बाइक है।

बिल्कुल वैसा एरिया है जंगल एरिया है जहां पर ये जहां नहीं कोई जाता --

ये मार्केट का नजारा है जहाँ पे ये देखो कई शारी दुकाने और कई शारी गाड़ियां निकलती हुई नजर आ रही है।

इसमें कई सारी मेडिसिंस वगैरह रखी हुई हैं इस स्टोर के अंदर।

और देख सकते है ये एक क्लासरूम में अपना प्रोजेक्ट बनाते हुए देखो सभी लोग बना रहे हैं बै --